एक फैक्टरी है बहुत बड़ा फैक्टरी इधर बिल्डिंग भी है।

एक गड्ढा भी है बीच में।

बोर्ड लगाया हुआ है लाइन का --

एक बैंक है छोटा-मोटा बैंक ।